यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं जो एक लड़का काला शर्ट में किसी चीज को मुस्कुरा रहा है और एक लड़का उधर साइड में खड़ा हुआ है उसके बगल में बहुत से उपकरण भी दिखाई दे रहे हैं और थोडा टेबल में कुछ कुछ--

और उनमें से बहुत सारे लोग मूर्ति को अ अच्छे से पकड़े हुए है और ले जा रहे है और एक व्यक्ति एक बांस के सीडी में चढ़ रहा है और आगे पीछे ईट है। .

यहाँ पे पांच डॉक्टर बैठे हुए है जिनमें से एक औरत है और चार लड़के और आगे के साइड सब देख रहे हैं।

ऊपर में ऍफ़.आर.यु लिखा हुआ है और उसके चारो तरफ बाउंड्री को घेरे हुए है और ऊपर में कुछ बैनर भी लगा हुआ है और वह मैदान बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है और पेड़ -पौधे भी दिख रहे है .

और उसके नीचे में एक व्यक्ति सो रहा है जैसे दिखाई दे रहा है और फिर कम्बल को ढका के उसके पीछे में कुछ सैमसंग का बेनर लगा हुआ है और उसके पीछे में बिजली तार भी लगी हुई है।

और अच्छे से कुछ कारक जैस का समान दिख रहा है इसके नीचे में कुछ गड्डढा दिखाई दे रहा है और शटर भी दिखाई दे रहा है जो नीचे जमे सब अच्छे से--